चौबीस घंटे उपलब्ध रहता है यहाँ पर लाइट है पंखा है। ये सुविधा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो --

ये एक लाल-किले की तरह है जैसे पुरानी हवेलियां होती है। उसके आस-पास घर बन रहे हैं गांव की तरह। ये एक खुला मैदान की तरह है।

आया है और यहाँ पे ऑटो वगैरह सब चलते हैं।